यहां बहोत सारे लाइटिंग लगी हुई है लाइटिंग की रंग सफेद है।

कारपेट के बाजू में चेयर है चेयर के रंग सफेद है।

पेड़ का रंग हरा है यहां एक आदमी दिखाई दे रहा है।

पिलर के रंग ग्रे है यहां एक शिशा है शिशा पे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां एक मंडप है मंडप का रंग सफेद पीला हरा है।

मंडप के आगे दो चेयर है चेयर का रंग गुलाबी और पीला है।

मंडप के पीछे बहोत सारे पेड़ है पेड़ का रंग हरा है।

यहां बहोत सारे टेबल और चेयर है। टेबल का रंग गोल्डन है।

यह एक गार्डन है गार्डन के अंदर झूला है।

कान का नाम शार्ड है शार्ड का रंग सफेद और कला है।

दुकान के सामने दो स्कूटी है दुकान के बाहर एक जनरेटर है जनरेटर का रंग लाल है।

टेबल के ऊपर ए_सी है। ए_सी का रंग सफेद है।

यहां पर एक शवर है शवर का रंग सिल्वर है।

यहां एक सीढ़ी है सीढ़ी का रंग ग्रे है।

चेयर के रंग दो काला है दो ऑरेंज है यहां एक पानी के बॉटल है।

एक चेयर का रंग काला है दूसरे चेयर का रंग ऑरेंज है।

यहां बहोत सारे लोग है सामने में एक कपड़े की दुकान है।

यहां मंडप दिखाई दे रहा है यहां बहुत सारे लोग है।

गाडियों के रंग सफेद और काला और लाल और भूरा है।

आगे एक आदमी बैठा हुआ है वह सफेद कलर के कपड़े पहना हुआ है।

यहां एक बैनर है बैनर का रंग नीला और लाल है।

बैनर पे महालक्ष्मी मार्बल लिखा हुआ है यहां एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां एक आदमी दिखाई दे रहा है उसने नीले कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

ये एक हिल स्टेशन है हिल स्टेशन का नाम विल्सन हिल है।

यह एक जिम है जिम के अंदर बहोत सारे मशीन रखे हुए हैं।